इसके ठीक सामने स्माइल ऑन आइस-क्रीम बर्थडे केक का बैनर लगा हुआ है पेड़-पौधे दिख रहे है जो की हरे-भरे है।

यह एक किताब की दुकान है जिसका नाम किताबघर है यहाँ सी_बी_एस_ई और एन_सी_इ_आर_टी की बुकस मिलती है।

यह एक किताब की दुकान है जिसमें ढ़ेर सारे बंडल बंडल किताबें रखी हुई है।

यह एक डी_जे की दुकान दिख रही है जहाँ पर आशी रॉक्स लिख --

टेक्स में बोहोत सारे वॉशर्स रखे हुए हैं ऊपर क्लीन ईकोनोमी लिखा हुआ है।

जो देखने में अत्यंत सुंदर है नील पीले सफेद काले रंगों के ब्लेज़र्स टंगे हुए है।

चदर बिछी हुई है दीवाल का रंग नारंगी और हरा दिख रहा है जो अत्यंत ही सुंदर है।

यहाँ चार पैकेट केक्स रखे हुए हैं जो देखने में अत्यंत स्वादिष्ट हैं।

छात्राओं के आने-जाने के लिए लाइब्रेरी बहुत सुंदर है।